ये एक जिम है यहां पे साइकलिंग भी होती है और पांच तरीके की--

है यहां पे और अब की सड़क भी बनी हुई है अलग-अलग तरीके की पेड़ भी बने हुए है बहोत शुद्ध वातावरण भी है बहोत अच्छी जगह भी है यहां पे --

धवन बोलते हैं यहां पर बहोत से लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए--

ये एक गार्डन है यहां पर लाइटे भी लगा रखी है जहां पर अलग अलग तरह के --

बहोत उसके ऊपर पेड़ी बना हुआ है ऑरेंज कलर का गेट भी है बहोत बड़ा अंदर से मंदिर है ऊपर भी एक झंडा लगा हुआ है।

बड़ा सा गार्डन है इसमें एक गोल सा बना हुआ है उसमें मतलब ये गोल है इसमें लाइटे भी जलती है और --

बनी हुई है मकान खूब सारे फ्लैट बने हुए हैं और गाड़ियां भी पार्किंग में खड़ी हुई हैं।

बैलून गुब्बारे लगे हुए हैं यहां पे सब अपना अपना कमरे में मतलब सब अपने अपने कमरे में --

यहां पर दो तीन जाने स्कूटी पर आए पेट्रोल भरवाने के लिए और कार भी लेकर आए हैं दो तीन जाने खड़े हैं।

वगैरा पनीर मावा वगैरा सब कुछ इस दुकान पे मिलता हैं।

ये एक मैरिज हाल है यहां पे कुर्सी वगैरा लगी पड़ी है और और सजावट भी --